इसमें एक बिल्डिंग दिख रही है डबल स्टोर है ऊपर का पट्टा पिला है और नीचे का भी पिला है और नीचे काफी सफ़ेद है और बीच मे बिकुल एकदम काला है।

सामने एक किराना दूकान दिख रही है जिसमें कुछ कुरकुरे टंगे हुए शटर है और बौरी में जाडू वगेरा रखे हुए है।

अर में दो दुकाने दिख रही है ये सामने आई एक ट्यूबलाइट लगी है एक दुकान में एक भैया खड़े है और एक भैया बैठे है।

और सामने कुछ सफ़ेद कलर का पेंट पुता हुआ है इधर टिन शेड भी है यहां आ-साफ़ सुथरी चीज़े नज़र आ रही है ये रात का समय है ट्रैन आने ही वाली है।

बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है एक लेडिज यह से गुजरती हुई जा रही है तालाब के उस तरफ मे एक बीचों बीच मे कुछ ऑफिस जैसा बना हुआ है।

और वहां एक टावर भी लगा हुआ है और बिजली के खम्भे भी दिख रहे हैं और कार जो रूड के नीचे खड़ी है हल्की सी धूप हुई है ये दिन का समय है आसमान भी दिख रहा है।

हरी जीन्स पहने हुए है और सर नीली जेर्किन पहने हुए है और सामने कुछ पौधे दिख रहे है और मट्टी भी दिख रही है और ये दिन का समय है।

और हल्की सी सफेद कार खड़ी हुई है रोड से साइड में और पीछे बिजली के तार दिख रहे है।

हाथ से फूल वगैरा नीचे गिरे हुए है आकाश दिख रहा है राईट साइड मे कुछ हरी झाड़े दिख रही है और ये दिन का समय है।

साइड लोहे की जलिंया लगी हैसाइड मे कुछ दिए पड़े हुए है। नीचे और बाग मे कुछ मटके दो मटके--